यह मछलियाँ है तीन टब दिख रहे है मछलियों को पकड के लाया गया है। बड़े टब में मछलियाँ हैं।

बिल्डिंगे बोहोत सुंदर लग रही है। सामने वाली बिल्डिंग व्हाइट कलर की लग रही है बगल पे जो नीली कलर की स्लेटी कलर कि जो बिल्डिंग है उसमे जो गेटो की नकाशी है बोहोत ही सराहनीय और अच्छी लग रही --

घर बने हुए हैं पिलर आधे कम्प्लीट है आधी छड़िया दिखाई दे रही हैं फारा तसला गिट्टी इत्यादि सामान सामने पड़ा हुआ है मैदान काफी विशाल है।

वेलकम बोहोत ही अलग-अलग कलर से लिखा हुआ है। दुकान काफी बड़ी है। कपड़ों की दुकान दिख रही है। बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। ग्राहकों के लिए दुकान विशाल

यह एक मॉल है मॉल में गेट के साम जाते जाते एक पंखा लगा हुआ है अग्निशमन यंत्र लगे हैं दो भइया --